और ये कोई गवर्नमेंट स्कूल लग रहा है। यहां पर बहोत सारे लोग जमा हो रहे हैं। लग रहा है ये किसी से काम के सिलसिले में यहाँ पर आए हुए हैं।

ये अपने दुकान की दुकान की नुमाइश कर रही है। पब्लिसिटी कर रही है कि सामान किस तरह से बेचते हैं जो बहुत ही प्यारी लग रही है। हर तरफ कपड़े ही कपड़े नजर आ रहै हैं। किसी की शॉप है कपड़ों की लेडिस जो बहुत अच्छी लग रही है।